मुझे दो झाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं ऑरेंज रंग की लगी हुई और आस-पास मुझे इसमें हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

एक ऑटो भी दिखाई दे रहा है।

नदी के अंदर मुझे सफेद कलर के चार से पांच आठ शारस दिखाई दे रहे हैं एक शारस मुझे इसमें उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।

और वहां उसको चेक करते हुए और इंजेक्शन लगाते हुए दिखाई दे रहे है।